बहोत सारी सुंदर-सुंदर सजावट और दो कन्याओं की मूर --

नीचे की तरफ एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दे रहा है सामने की तरफ अ ए रेलिंग दिख रही है गैलरी बहुत पुराना बना नज़र --

इस चित्र मे नीला आकाश और एक बड़ा घर बनल एक बड़ी --

कार्यालय या स्कूल जैसा दिखाई दे रहा है तिरंगा झंडा बहुत सुंदर लग रहा है।

इस चित्र मे खेत दिखाई दे रहा है सामने नीला आकाश हरे-भरे पेड़ और --

ऊपर नीला अकाश और साइड में बहोत सारी दुकानें नज़र आ रही है जो बहोत अच्छी लग रही --

नए गुब्बारे लगे हुए हैं लाल रंग के जो बहुत ही सुन्दर लग रहें हैं पीछे की तरफ भी बहुत सारी कुर्सियाँ रखी नज़र --

किचन मे लाइटें बहुत सुन्दर लग रही --

वहाँ संगीतकार दिख रहे हैं जो संगीत के उपकरण लिए हुए संगीत बजा रहे हैं बहोत बड़े काँच मे रखा --

कुछ और कासमी रंग भी नज़र आ रहा है नीचे की तरफ बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो बहोत सुन्दर लग --

बैठने की जगह बनाई गई है | बहुत ही सुन्दर लग रहा है | हरे भरे पेड़ो से चित्र बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है |

सीधे मै एक चर्च दिख रहा है अंदर बहुत से लोग निचे खड़े हुए हैं अंदर सफ़ेद और नीले रंग के --

ये लाइटिंग बहुत सुन्दर लग रही है | चित्र में पीछे की तरफ ऐ.सी. भी लगी दिखाई दे रही है और दूल्हा दुल्हन के लिए बड़ी कुर्सी रखी गई है |

चत्रभुवन जी पर्पस भवन दिखाई दे रहा है | एक बाइक अंदर जाती नजर आ रही है हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं |

ये बहुत बड़ा कार्यालय है | स्कूल कॉलेज नजर आ रहा है | जहाँ व्यक्ति उसके सामान मै खड़े हुए हैं और बच्चे भी खड़े दिखाई दे रहे हैं | पीछे --

मशीन दिख रही है | निचे कुछ लिखा नजर आ रहा है | इसमें कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है | सामने की तरफ लाल पट्टी से कुछ लिखा हुआ दिख --